नाईस डेकोरेशन बहुत अच्छा हैं और ये वर्किंग ऑफिसियल वर्क अच्छा हैं।

और इसमें जो नेचर साइड साइड से जो वृक्ष लगे हुए है वे भी बहोत अच्छे आसमान से नीले-नीले बादलों की तरह बहोत ही बड़ा है।

ये मास्टर एंड बहुत ही अच्छा बना के रखते है और ये ये जिम जो हैं ये लोगों के लिए फायदेमंद हैं एक्सरसाइज --

ये काम आने के लिए इसका उपयोग किया जाता हैं किसी भी संस्थाओ में इसका हम उपयोग कर सकते हैं एक चक्की की तरह इसका उपयोग किया जाता हैं और--